तू साइकिल रिक्शा भी नजर आ रहे हैं उसे तरफ बड़े-बड़े इमारत दिख --

तो यहाँ एक चर्च नजर आ रहा है चर्च के अंदर बहुत सारे लोग --

दो साइकिल और एक जीप नजर आ रही है |

कुछ लोग उसके ऊपर ठहर कर काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं।

थैलो में सफेद थैलों में और कुछ सामान डब्बो मे --

और उनके पास मे ही बड़े-बड़े भी पेड़ नजर आ रहे हैं |

हम इसे पानी के फवारे के बीच में से देख सकते हैं।